यहाँ पर कुछ जीने दिखाई दे रहे जीने म अ काफी काले दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत बड़े -बड़े पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ सुखे हुये पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर ये फर्श पर व्हाइट कलर का मार्बल बिछा हुआ है।

यहाँ पर एक फूलों का गार्डन दिखाई दे रहा है जो जिसमें काफी अलग -अलग कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे है जो काफी सुंदर लग रहे हैं।